कुछ किताब रखे थे। एक किताब दिखाई दे रहा है। एक महिला दिखाई दे रही है। बै --

पेड़ दिखाई दे रहें हैं। हरे-हरे भरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे मुझे एक खुला मैदान भी दिखाई दे रहा हैं जो यहाँ पे छोटे-छोटे हरे-हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

यां पे मुझे बड़े-बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहें हैं।

है यहां पे मुझे लाल रंग कि कारपेट दिखाई दे रही हैं। यहां पे मुझे --